और जो बराबर में एलईडी चल रही है उसमें हमारे भगवान जी गणेश भगवान जी की वो कितनी अच्छी लग रही है।

ये माली है और ये माली फूल बेच रहे हैं इन मालियों पर काफी तरह के फूल हैं जैसे सूरजमुखी गुलाब गेंदा।

अच्छा है इस चर्च में काफी अच्छी प्रार्थना हो रही है कितने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में इस चर्च में काफी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जाती हैं।

एक स्टेशन है और ये स्टेशन बहुत बढ़िया है यहां हम ट्रेन वगैरा का वेट करते हैं।

तो हम इस ट्रेन की मदद से पहुंचाते हैं ये ट्रेन हमारी बहुत सहायता करती है।